यह गुफा में एक लड़का है।

यह लड़का जूता पहना है एबम में एवं चश्मा भी पेहना हुआ है।

एवं यहाँ पर पटरीयां भी है| यह पटरी पर ट्रेन चलती है।

मस्जिद में बोहोत सारे मुसलमान भाई शुक्रवार को सुबह शाम यहां पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं।

या हम यहाँ हॉस्पिटल में बहोत सारी सीशे लगे हुएं है।

इ ले ले लेजाते हुए दिखाई दे रहा है।